यह मछली मंडी है यहाँ पे एक औरत मछली बना रही है और आदमी एक औरत है मास्क लगाए एक है उ भी मास्क है पिछे टोपी लाल कलर का है बूलू कलर का और यहां पे एक मरलाहबा है उ भी मछली बना रहा है।

हम्म मछलि का भि है यहाँ पे एक तरजु भी है उसपर एक किलो लिखा हुआ है एककिलबा यानी रखा हुवा है।

बहुत ही अच्छा देखने में है यहां पर एक डस्टबिन भी है और एक झाड़ू भी है और एक गेट मे ताल ताला मारा गया है।